सामने चार डिब्बे हैं जो वाइट और ब्राउन कलर के हैं।

आदमी खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक कलर की पैंट और ब्लू शर्ट पहना हुआ है।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

इन लोगों ने मास्क पहना हुआ है।

ईंटों से साइट को सजाया गया है जो ईंटों कलर लाल और सफेद है।

यह किसी बड़ी इमारत का दृश्य है।

सामने एंट्रेंस है जहां पर गेट पर एक आदमी बैठा हुआ है।